वहीं ईमारत पे बहोत सारे पोस्टर भी लगे हुए है पोस्टरों का रंग नीला सफ़ेद और लाल दिखाई दे रहा हैं।